इस तस्वीर में मुझे माता की मूर्ति दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ किराने का सामान दिखाई दे--

इस तस्वीर में मुझे एक एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे एक चैनल गेट दिखाई दे रहा--

इस तस्वीर में मुझे कुछ खेत दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ तालाब दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे होटल तुलसी दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक दुकान दिखाई दे रहीं हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे एक लाइट दिखाई दे रही है।